और कुछ गेट दिखाई दे रहे हैं जो वाइट कलर के हैं और बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

और एक घर का दीवार दिखाई दे रहा हैं जो व्हाइट कलर का हैं और कुछ कारपेट दिखाई दे रहें--

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है और ग्रीन कलर का है और बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के है।

और कुछ कुर्सी दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है और कुछ बैनर दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ कारपेट दिखाई दे रहे है जो ग्रे कलर के है और ग्रीन कलर के है।

और कुछ स्कूटी दिखाई दे रहे हैं जो वाइट कलर के हैं और ब्लैक कलर के हैं।

और एक बड़ासा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और ग्रे कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक दुकान जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है।

इसमें खिड़कियाय दिखाई दे रहीं हैं और दो गेट दिखाई दे रहें हैं।

और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो बैठे हुए है और कुछ खड़े है।

इसमें कुछ पेपर्स रखे हुएं हैं जो येलो कलर के है और ग्रीन कलर के है और एक बॉटल दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मुझे एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

और कुछ चेयरें दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है।

इस इमेज में मुझे एक छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है जो येलो कलर का है और मिट्टी कलर का है।

और बहोत सारी कुर्सियांए दिखाई दे रही है जो रेड कलर की है और व्हाइट कलर की है और कुछ लाइटें दिखाई दे रही है।

और बहोत सारे बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं और आसमान दिखाई दे रहा है।

और एक पोल दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और बहोत सारे तारे दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है।

इस इमेज मुझे एक आध घर दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

अब कुछ तारे दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है।

इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं दिखाई दे रही हैं।